वन्केट हॉल सामने से दिख रहा है जो पूरी तरीके से सजा हुआ और भीड़-भाड़ से भरा हुआ है और शादी का समारोह चल रहे है सामने में एक गाड़ी जो सजी धजी खड़ी है।

एक फूलों से सजा हुआ लॉन है जहाँ पर एक आदमी और एक औरत कैमरे के तरफ पोज़ देते हुए नजर आ रहे हैं।